लोग यहा से मलाएँ खरीद कर भगवान को अर्पित करते है ये बहोत ही सुंदर दिखने वाली मालाएँ और सस्ती है।

इस पानी की सरोवर को देख कर नहीं किया जा सकता की यह विशाल नहीं होगा और जो लेडीजे जा रही हैं वह भी इसकी सुंदरता को देखते हुए जा रही हैं।